यहां पर एक मनी ट्रांसफर का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

वहां पर कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं।

इस्कूल के सामने कुछ जगह भी दिखाई दे रही है।

मूर्ति के ऊपर एक लाल चुनरी उड़ी हुई दिखाई दे रही है।

आस पास मे कही सारे पेड़-पौधे दिख रहे है।

घर के ऊपर बोर्ड दिखाई दे रहा है।